और यहां पर बोहोत सारे लोग आए हैं।

वेरका की शॉप है यहां पर--

सकते हैं यहां पर--

तो जैसा की आप--

फोटो में बहोत--

दो लोग भी--

और यहां पर बहोत सारे झूले लगे हुए--

तो जैसा कि आप देख--

और यहां पर टीचर्स और स्कूल में बच्चे--

बहोत सारी लड़कियां खड़ी--